कत्थी कलर की एक शर्ट कपड़ा टंगा हुआ इसके पीछे देखोगे की बहोत सा--

एक बिस्तर रखा है कबर्ड बॉक्स रखा है एक बॉटल रखी है ग्रीन क--

ऐप से मैं बात कर रहा हूं बाजू में देखो एक बाइक खरी हुई है एक स्टोर खुला हुआ है जिसके ऊपर--

और उसके बाजू में देखो कि हरे कलर का टापू है जिसमें बहोत बड़े बड़े--

चश्मे के बहोत सारे ब्रांड लगे आप चश्मे ही चश्मे रखे हैं आजू बाजू आप देखोगे की क्लीनिंग वाटर रखा हुआ --

देख सकते हो कि एक पहाड़ है जिसके आजू बाजू बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं और बाजू में देखो किंग बॉन्ड भरा ज्वाइंट पेड़ लगा है और सामने देखोगे कि चट्टान है उसके सामने देखोगे एक बहुत बड़ा पहाड़ है।

देखो कि एक जिम है जिम के अंदर देखोगे कि पीले कलर की टी-शर्ट ब्लैक कलर का पैंट जूते पहने हुए दोस्त लोग बात कर रहे हैं और बाजू में देखोगे एक लाल कलर की टी-शर्ट पहने हुए व्यक्ति --

अथीलड़ियां आधे कलर के बाजू में कोई ग्राउंड है ग्राउंड के सामने देखोगे बहोत बड़ा दो पेड़ लगा हुआ सामने देखोगे एक लड़का आ रहा है नीले से शर्ट --

बुक शेल्फ मैं आप देख सकते हो बहोत सारी किताबें रखी हुई हैं किताबों के साथ साथ--

एक कपबोर्ड में तीन चार एक बहुत सारी किताबें रखी हुई किताब के सामने उनके ऊपर देखोगे कि लाइटिंग लगी हुई है पीछे देखोगे कि--

सफेद कलर की लाइट लगी हुई है बाजू में देखोगे कि समान रखे हुए है इलेक्ट्रिक वाले उपर घड़ी लगी--

देखने मे लगेगा की मेडिकल स्टोर है इसके बाजू में देखे कि एक कबर्ड मे बहोत सारी दवाई लग--

एक में देखने मिलता है कि एक कॉफी शॉप है काफी शॉप के सामने देखेंगे कि दो लोग बात कर रे है सफेद कलर की शर्ट पेहने हुए।

पिक में देखने मिलता है कि एक बिल्डिंग है बिल्डिंग के सामने --

देखने मिलता है कि एक शॉपिंग मॉल है जिसमें जिम है इसके बाजू में एक मोबाइल की दुकान है उसमें टैलेंट्स एक बिल्डिंग के ऊपर सफेद का पोता हुआ है और वेल्डर लगावाना है।

जिसमें ताला लगा हुआ उसके पीछे देखो कि एक खंभा लगा हुआ है।

हरे कलर का बाजू में सेब रखा हुआ है पीले कलर का।

पिक में देखने मिलता है कि एक केबिन है जिसमें आजू बाजु में एक ठो उम बेंच लगी है जिसमें--

कुर्सियां रखी है। आजू बाजू नीले कलर का पुता हुआ हरे कलर का पुता हुआ पीछे देखेंगे की बहोत सारे--

आजू-बाजू में देखेंगे कि बहोत बड़ा मैदान है मैदान के अन्दर वह तीन चार कबड लगे है उसके सामने ही ही बहोत बड़ा पेड़ लगा हुआ है।

पूजा करते रहते हैं फूल्स रखे रहते हैं डेकोरेशन भी है सफेद कलर का और--